उनधार की देखा जाइए तो बोहोत अच्छा ड्रिसया है पीछे की और ये एक हेरण है ये बोहोत तेज दोदता है ये अधिकतर--

और ये ड्रिसया बोहोत ही अच्छा है और ये मंदिर का ड्रिसया है और बोहोत ही याचा है इसमे तीन खचवे है उपेर की और ये जू का फोंट है और निचे बोहोत सर पनि है ।

यह ड्रिसया अगर दिखाई दे तो बोहोत अच्छा दृश्य हे इसने चलाव हे पनीर हे दल हे सलाद हे आचार हे ।